यहां एक काले कलर का एक जानवर खड़ा है उसके सामने एक मिट्टी की जमीन है।

यहाँ एक रोड है उसपे एक कार खड़ी है जिसका कलर सफ़ेद है और एक ठेला खड़ा है।

और सामने एक पेड़ है और यहाँ कुछ घांस भी है कुछ छोटे-बड़े पेड़ है।

ये एक स्टेशन है जिसके साइड मे दो तीन पटरिया है उस पे एक ट्रेन है और उसके ऊपर एक करंट का खम्बा लगा हुआ है